इस चित्र में मुझे पीछे एक बड़ा सा घर नजर आ--

इस चित्र में मुझे एक सड़क नजर आ रही है।

जिसके बीच मे एक बड़ा सा गेट नज़र आ रहा है।

इस चित्र में मुझे एक सड़क नज़र आ रही है।

इस चित्र में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ मशीनस भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे एक बड़ासा घर दिखाई दे रहा हैं।